जहाँ पे डीजल लिखा हुआ है।

जोकि हरी-भरी दिख रही है।

यह एक ए टी एम है।

जिसमे एक बड़ा सा जाली लगा हुआ है।

और ये बिल्डिंगो का रंग सफ़ेद है।